यहाँ पर एक गाड़ी दिखाई दे रही है गाड़ी का रंग सिल्क स्लेटी दिखाई दे रहा है गाड़ी में लाइट लगा है जोकि लाल कलर की दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क दुकानों में दिखाई दे रही है ये दुकानों में कोकोकोला का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसपे जो कि लाल रंग का --

उपर आसमान दिखाई दे रहा है और बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है मिट्टी पड़ी हुई दिखाई दे रही है पीछे एक बिल्डिंग दिखाई दे रहे है--

सायकल दिखाई दे रही है शिडियां दिखाई दे रही है एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसपे नर्सिंग होम --

एक खिड़किया बनी हुई है खिड़कियों का रंग काला दिखाई दे रहा है और यहाँ पर तार लगे हुए दिखाई दे रहे है और लाइट भी --

वहाँ नीला दिखाई दे रहा है ग्राउंड में झंडे लगे हुए ये है उसमे लाल और ऑरेंज झंडे लगे हुए दिखाई दे रहै है।

किताबे दिखाई दे रही है जो की सफ़ेद रंग की दिखाई दे रही है दुकान के अंदर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है उसने लाल कलर की टी शर्ट पहनी हुई है।

वहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ दिखाई दे रहा है लड़के ने जैकेट वाले कपडे पहने हुए है उसके पास में एक नीले रंग का चद्दर दिखाई दे रहा है।

कमरा दिखाई दे रहा है कमरा काफी बड़ा दिखाई दे रहा है कमरे में बड़े-बड़े सोफे लगे हुए दिखाई दे रहे है।